सामने हमें एक बड़े से घर का छोटा-सा कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें सोफा चेयर रखा हुआ है जो कि ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा।

सामने हमें एक छोटा-सा तालाब दिखाई दे रहा है जिस में का पानी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और हमें दो बदक भी दिखाई देते हैं जो की पानी में तैर रही हैं।

गाय के सामने उसका खाना भी रखा हुआ है।

पर ब्लैक कलर का प्लेट रखा हुआ है आ जिसमे चावल खिरे प्याज कुछ सब्जिया और पनीव आरु दाल भी रखी हुई है जिसमे दो चम्मच रखे हुए है।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

सामने हमें एक छोटा सा चाय का स्टॉल दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक पुरानी सी बाल्टी रखी हुई है और चाय स्टॉल के अ टेबल में कई सारे सामान रखे हुए हैं और दो आदमी भी पास में खड़े हैं।

सामने एक टेबल में कृष्ण जी उम्म सर के ऊपर काम पोषण बना हुआ स्टैचू मूर्ति रखा हुआ है और अगल-बगल दो मूर्तियां रखी हुई है पास में ही एक रस्सी भी दिखाई दे रही है।

सामने में हमे एक छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कुछ पत्थर पड़े हुए है और पत्थर के ऊपर एक मगरमच्छ भी सोया हुआ है।